जड़ा हुआ है और लोग यहाँ यह मूर्ति को पूजा भी करते है और यह मूर्ति का फोटो भी लेते है।